यहाँ पर गाड़ी का कोई भी कुछ नहीं होता है।

यह एक मॉल है।

यहाँ पर इस बस में लोग यात्रियाँ लोग --

यह टोटो गाड़ी देखने पे काफी ही सुंदर है।

इस टोटो गाड़ी में --

और ये फूल के रंग काफी पीले हें।

यह फूल को लोग पूजा-पाठ घरों में सजावट के लिए यूज़ कर --

जो हम बहोत सारे लोगों का बाल दाढ़ी मुह में फेसियल आदि "चीज़े करवाते हैं।

बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट लोग इस गढ्ढे किया जा रहा है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं।

ए बच्चा लोग डांस करती हैं।